और दीवार पर काफी सारी पिक्चर लगी हुई है ब्लॅक अँड व्हाइट और थोड़ी सी जगह मे कलरफूल है।

पिक्चर मे कुछ पैदल है और यहाँ पे एक पेड पौधे भी लगे हुए है। लाइट के खंबे लगे हुए है। बने है दुकान

लकड़िया डली हुई है गीली लकड़ियां डली हुई है सूखे पत्ते भी डले ढले हुए है।

यहाँ एक पहाड़ी इलाका है जहा गुफा ऐसा कुछ बना हुआ है। प्राचीन कालो मे और यहाँ पर काफी पत्थरो की डिज़ाइन बनी हुई है हाथी बने हुए है।

यहाँ एक स्टेज आयेगा जो की काफी अच्छा लग रहा है यहाँ बलून लगे हुए है।